आस पास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा--

और इंसान भी दिखाई दे रहा है।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

दिखाई दे रहा है जो कि उन लोग का खाना देता है उसमें।

और आसपास में बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है छोटा छोटा।

और राइट में छोटा छोटा गेलेन दिखाई दे रहा है।

में एक छत दिखाई दे रहा है रेड कलर का टीना लगा--

और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा--

पेशेंट का बहुत सारा बिस्तर दिखाई दे रहा है।

दो इंसान दिखाई दे रहा हैं इसमें।

उसको राउंड करके फेन्सिंग दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है।

इस रास्ता के किनारे में इलेक्ट्रिक पोलस दिखाई दे रहा--

और सामने में बंबू दिखाई दे रहा है।

इसमें एक ठेला दिखाई दे रहा है।

उसका सामने में एक ईटा भी दिखाई दे रहा है।

गारी का सामने इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में कार्टून बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।